जिन पर वाइट और ग्रीन पर्दे लगे हैं।

जिनके अंदर कपड़े रखे हैं।

और कुछ कपड़े टंगे हुए है।

और यहां बहुत सारे आदमी हैं।

पंखे भी है और कुछ लाइट भी है।

और कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे है।

वाशिंग मशीन भी रखी है।

ये एक मंदिर बना हुआ है।

एक जंगला भी बना हुआ है।